यह एक खेल का मैदान है।

यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं अपना इलाज कराते हैं।

कलम पेन्सिल और पढाई से सम्बन्ध्ति सामान मिलते हैं यहाँ से हम इन चीजों को खरीद सकते हैं ।

हम समारोह में त्यौहारों में यहाँ से फुल खरीद के ले जाते हैं मालाएँ खरीद के ले जाते हैं और अपने घरों को सजाते हैं।